यंत्र पकड़े हुए है जिससे --

यह अंश कम्पुटर सेंटर है।

कोई होटल का रिसेप्शन लग रहा है।

और लिखा है यहाँ मे आई हैल्प यू क्या मै आपकी मदद कर सकता हूँ ये पूछ-ताछ केंद्र होगा ये हॉस्पिटल हो सकता है या फिर होटल हो सकता है कन्फर्म नहीं है

एक साइकिल वाला आरहे है और रोड के किनारे बहुत बड़ा बांद बनाया गए है।

मारवार पत्थर को एक --

सुनसान लग रहा है बाकी कोई भवन बना हुआ है क्या है ? कुछ लिखा नहीं है तो समझ आ नहीं रहा है की क्या चीज का घर है बिल्डिंग हैं ।

नाम से कोई रेस्टोरेंट है ये कोई बढ़िया रेस्टोरेंट यहां पे अच्छे-अच्छे भोजन वगैरह मिलते हैं सामने एक स्कूटी है दिखने से बहुत जबरदस्त अलग ढंग का दिखाई दे रहा है।

क्रिएटिविटी कर रहे हैं बच्चे द्वारा दो मैडम यहां पर जांच पड़ताल में लगे हुए हैं मस्त है एग्जाम --